और इनके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और कुछ लोग फल भी खरीद रहें हैं और देख रहें हैं।

जो काफी सुन्दर ढंग से सजाया हुआ है।

यहाँ एक वेक्सिनेशन केंद्र है।